जो बास कि मदद से --

गेट का रंग ऑरेंज है।

इसमें बोहत प्रकार के साड़ियाँ मिलती हैं।

हरे कलर का ब्लू कलर का व्हाइट कलर का --

यह एक फोर व्हीलर है ।

खड़ी की गई है।

यह एक राधे-कृष्णा का मूर्ति है।

और इसमें शीशे की मदद से --